इस फ़ोटो मे हमें एक बस स्टैंड की तस्वीर दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

यह एक हैंयर कटिंग दूकान हैं हमे सामने ऊपर एक बोर्ड नजर आ रहा हैं और एक हमे बिल्डिंग नज़र आ रही हैं।

और हमें सामने एक तराजू भी दिखाई दे रहा है साइड में हमें थर्मोकोल के बोक्सेस दिखाई दे रहे है और कुछ व्यक्ति इसमें मछली खरीदते हुए दिखाई दे रहे है।

हमे सामने कुछ पेड पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक आसमान दिखाई दे रहा है आसमान मे एक सूरज नजर आ रहा है।

इस फोटो मे हमे एक सफेद कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है हमे आस-पास घास दिखाई दे रही है घास हरे कलर की है।